यहाँ पर काफी सारे पेड़ नजर आ रहा है यहाँ पर एक पार्क दिखाई दे रह है पार्क में काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पेड़ काफी हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर काफ़ी सारी खिड़किया बनी हुई है बिल्डिंग को काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है पीछे काफ़ी सरे पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ काफी हरे भरे दिखाई दे रहे है।

इधर ये बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग में काफी सारे शॉप दिखाई दे रही हैं शॉप काफी बड़ी नजर आ रही है शॉप के बाहर एक बोर्ड लगा है बोर्ड पर स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पे का --